चट्टान पे बहुत से व्यक्ति घूमने जाते है।

ये कार्यकर्मो में बहोत सुन्दर लगती है।

सुरक्षित रखतें हैं कोई किसी की कार यहाँ से चोरी न हो।

अगल-बगल के गांव के भी लोग आतें --

यह एक स्टेज है।

इसमें म नदी के पास में को दुकान है ।

बुक इत्यादि पेन कॉपी --

बच्चों के खेलने वाली --

येह एक मिक्सर मशीन है ।

रतिया ने दर्ज चली जाती --

य दुकान से सामान ले जाने लाने के लिए --

आदमी रहते है अपने-अपने रूम में।

व्यक्ति बैठा रहता है जो ग्राहकन को --

यह एक पुरानी यह यह एक --

सवारी करते है नाव में घूमते है इधर-विधर।

और ग्राहक इन मछलियों को करीदते हैं और खरीद के --